ये एक पार्क है पार्क की सड़क है यहां पर साइडों पर हरी भरी घास है यहां पर छोटे-छोटे से पौधे यहां पर बड़े दरख भी मौजूदा है जमीन पर हरी भरी घास --

एक ये एक बुक शॉप है जहां पर स्नेशनी का असमान मिलता है यहां पर हर किस्म की हर कोई बुक वगैरह मौजूद होती है।

और यहां पर कुछ मोटी किताब है और कुछ पतली है और कुछ छोटी सी है किताब और कुछ बड़ी-बड़ी किताबें जो है।

यहां पर हरे-भरे बहुत ज्यादा दरख़्त वगैरा मौजूद है यहां पर हरियाली जो है बहुत ज्यादा है यहां पर।

ये मछली ये मछली के पीसेस वगैरह करके इस बाउल में रखे गए हैं और इनके मुंह इनके मुंह जो है वो निकाल दिए गए हैं।

वहीं के पास में घास वगैरा मौजूद है और बड़े छोटे-छोटे दरख़्त भी मौजूद हैं पौधे मौजूद हैं यहां बड़े दरख़्त भी मौजूद हैं ।

ये पार्क है पार्क में बहुत ज्यादा घास वगैरा मौजूद है यहां पर बहुत ज्यादा लोग भी मौजूद हैं यहां सामने सड़क पर एक।